जो इधर चीजें दिख दिख दिखती दिखाई दे रही है।

सूर्य देवता की रोशनी सामने की ओर आती हुई दिखाई दे रही फल सब्जी भाजी कितनी सारी--

लोहे की मशीन उनके साथ चीज रखी हुई दिखाई दे रही है।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

कई सारे खंभे गड़े दिखाई दे जिन खभों में वायरिंग फैली हुई दिखाई दे रही टायर लगे दिखाई दे ब्लैक कलर के टायरे लगे हुए दिखाई दे रहे सामने की ओर--

लगी हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर--

सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है नीले रंग की टी शल्ट पहना हुआ दिखाई--

मुझे इस फोटो सामने हरे भरे पेड पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं नीचे मैदान बनाया गया है सामने बाकी सारे--

कई सारे दिन का समय दिखाई दे रहा आजु बाजू कई सा--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कापी सारे कॉपी किताब विताब कवर वावर चढ़ाए हुए दिखाई दे रहे है। --

जिस फोटो के सामने की ओर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिस हॉल मे ऊपर की ओर व्हाइट कलर की लाइटिंग लगाई गयी है ऊपर के ओर व्हाइट कलर से पोता हुआ दिखाई दे नीचे कि ओ --

आजु बाजु कई सारे कि रोशन दान--

दिखाई दे रहे हैं सामने कि ओर दिन का समय दिखाई दे आजू बाजू--

सामने को एक टंकी रखी हुई दिखाई दे रही आजू-बाजू के सामने एक कैंटीन ऐटीन रखी हुए दिखाई दे रहे है।

ढेर सारे इंसान बैठे हुए दिखाई दे रहे है सामने की ओर आजू बाजू के हर इंसान बैठे तो है।

एक सो ब्लैक कलर की बेचें क्यों दिखाई दे रही है सामने की ओर--

यह दुकान उकान खुली हुई दिखाई दे रही हैं सामने।

तो जेंट्स का पैंट होगा जो शर्ट पेहना हुआ दिखाई दे रा वाइट कलर की कार को इंजीन खोल के सामने की ओर बनाते हुए दिखाई दे रा है दिन का समय दिखाई दे रहा है।

ऊपर को टीन लगायी गयीं है जिनमे से गाड़ी मोटर दिखाई दे रही है सामने एक दुकान बने हुए दिखाई दे रही है सामने की ओर--

ये पहाड़ वहाड़ बने है दिखाई दे नीला आसमान दिखाई सामने को कैसे बड़े बड़े पहाड़ वहाड बनाए हुए आदि वादी कैसे--

पीले कलर के लो लोहे के सामान को पोता गया आजू बाजू जैसे होटल सभी--

आजू बाजू कई सारे चीजें बनी दिखाई दे रही हैं सामने कि ओ--

पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं जो कि सामने की ओर वायरिंग आयरिंग फैली हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर का आसमान दिखाई दे के खिड़कियां गेट है।

मुझे इस फोटो में सामने दीवाल पुती हुई दिखाई दे रही--

इधर रोड वोड भी बनाई गई है दिन का समय दिखाई दे रहा नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है आजू-बाजू --

नील खंभे लाइटिंग -आइटिंग लगी हुई दिखाई दे। ईंट-सिंट के ढेर लगे दिखाई दे रहे--